एक बस को दिखाया गया है जिसके ऊपर समीर लि--

पूरी सुविधा है लोग जिम कर रहे--

ऑफ चल रहा है आप यहां से--